कुछ वायरस दिखाई दे रहे हैं।

इसका नाम इंपीरियल लाइब्रेरी है।

ब्रेंच का कलर लाल है।

यह एक दुकान के अंदर का चित्र है।

एक चेयर्स भी रखा हुआ है।

बहुत से फूल भी है फूल का कलर सफेद पिंक लाल है।

और भी बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे कपड़े से रस्सी पे सूखने दिया गया है एक ब्लू कलर का कारपेट भी है।

बहुत सारे कॉपी किताब रखे हुए हैं।

यहां पे बहोत छोटे-छोटे घर भी बनाया गया है।

एक जगह पे ग्रीन कलर के बोर्ड मे कुछ लिखा हुआ है।

यहां पे एक बहोत बड़ा ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

एक शिशा लगाया गया है दो सोफा भी है।

यहां पर कुछ भैंसे दिखाई दे रही है।

आस पास में बहुत सारा पेड़ पौधा भी है।

यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी रखा हुआ है।

यह एक नर्सरी का चित्र है।

आदमी ने काला कलर का शर्ट पहन रखा है।

यहां पे बहोत सारे छोटे छोटे पौधे भी हैं।

यह एक थाना का चित्र है जिसका नाम लालपुर थाना है।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

एक आ अल ऑटो दिखाई दे रहा है जिसका कलर काला है।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

बच्चों का खेलों का खिलौना भी रखा गया है।

यहां पे कुछ गाड़ियां भी लगाई गई है गाड़ी का कलर सफेद है।

ऊपर में इंडिया होटल लिखा हुआ है।

इसपे एक्सपीरियंस जॉन लिखा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे आदमी भी है।

फोर व्हीलर भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक पत्थल बहुत दिखाई दे रहा है।

चेयर्स पे सफेद कलर का कपड़ा रखा गया है।

लकड़ी ऊपर का छिलका खिल गया है।

यह एक होटल के बाहर का चित्र है।